सुंदर तरीके के साथ सजाई हुई है।

यह एक बहुत ही बड़ी पार्क है पार्क बहुत ही सुंदर बनाई हुई है और बहुत ही अच्छी लग रही है और बहुत ही बड़े वृक्ष लगे हुए हैं।

और बहुत सुंदर गणेश जी की कृष्ण जी की मूर्ति यहां पे--

और बहुत ही सुंदर ये सब बनाया--

ये एक बहुत बड़ा स्कूल है जो कि यहां पे वृक्ष भी लगा हुआ है बहुत सारे बच्चे यहां पे खड़े हैं बिल्डिंग बनी हुई है।

और बहुत ही अच्छे थे तरीके से--

और एम_आर_एफ टायर्स ये इसकी ऐड करने के लिए लगा हुआ है।

और यहां पे बहुत सारा समान रखा हुआ है।

गॉगल्स रखी हुई हैं चश्मे रखे हुए हैं नजर के।

और शर्ट पड़ी हुई है ऊपर बादल छाए हुए हैं मंदिर बहोत ही बड़ा है।